कारपेट बिछा हुआ दिख रहा है एक अ टेबिल रखी हुई दिख रही है काउंटर दिख रही है।

सामने एक ग्राउंड दिखा रहा है जिसपे ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है।